ये एक बैंक है बैंक में एक मोटर साइकिल से आदमी आ ड़ा है| बैंक के आगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है| ये एच_डी_एफ_सी बैंक है| बैंक के ऊपर चार एस_सी याँ लगी हुई है| बैंक के आगे एक लेडीज बात करती हुई नजर आ रही है।

बैंक के अंदर एक लेडिज जाती हुई नजर आ रही है बैंक के आगे बहोत --

ये कोई होटल का कोई होटल है शायद रॉयल प्लेस | होटल का नाम है रॉयल प्लेस ।

होटल के आस-पास बहुत सारे दुकाने है बाइक लगी हुई है दो दर्म दो लोग एक तीर पकड़ के दोनों तीर पकड़ के खड़े है होटल अच्छे डेकोरेशन किए हुए है।

टेंपू पे एक औरत अंदर की ओर घुसती हुई नजर आ रही है| टेंपू के पीछे एक बस भी चलता हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही सुन्दर डेकोरेशन किया हुआ है।

यहाँ एक आदमी नजर आ रहा है| एक दुकान पे खड़ा हुआ एक आदमी है दुकान का नाम चिल्ड्रेन बुक्स है।

लड़के को हेयर ड्रायर से बाल सुखाया जा रहा है| एक सेलून में एक लड़का मास्क लगा के हेयर ड्रायर के साथ--

विद्यालय में बहुत ही पुराना नजर आ रहा है विद्यालय के अगल-बगल बहुत ही ग्रीनरी नजर आ रही है कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए है।

तीनो लड़के आपस में बाते कर रहे है एक लड़का मास्क पहना हुआ है जो की हैंकी मास्क बना के पहना हुआ है।

बैंक के आगे बैंक के बगल में ही एक दुकान बनी हुई है| बैंक पे अ ब्लू कलर का है जो की बहोत ही सुंदर नजर आ रहा है| बैंक में एक आदमी भी खड़ा है।

जहां पे कुछ प्रोग्राम हो रहे है| इसमें एक वाइट कलर का फूल है एक अ ग्रीन कलर का फूल है औरेंज कलर का फूल है।

यहाँ एक ए_टी_एम एस_बी_आई का ए_टी_एम नजर आ रहा है| एक लड़का ए_टी_एम से पैसा निकल रहा है दूसरा लड़का ए_टी_एम से बाहर निकाल रहा है।

कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे आदमियां खड़े हुए है कंस्ट्रक्शन में पानी भी है छर भी है पेड़-पौधे है कुछ मकाने है कुछ मजदूरे अपना काम कर रही है।

अ पार्क में झूला भी लगा हुआ है| झूला में एक बच्चा झूलता हुआ नजर आ रहा है जो बच्चा बोहत ही खुश नजर आ रहा है।

पार्क के आसपास पेड़-पौधे और भी नजर आ रहे है कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही है झूला येल्लो कलर का है जिसमे बच्चा झूल रहा --

वहाँ पे कुछ प्रोग्रामे चल रही है बहुत सारे बच्चे हैं।